सुबह के समय में नदी में भारी भीड़ हैं तथा लोगो की भीड़ से यह पर्व का महत्व है।

मंच के चारो तरफ रंगा-रंगीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

रात्रि के समय में विवाह उत्सव में दो महिला पुरुष का शादी हो रहा है तथा चारो तरफ लोगो की भारी भीड़ है।

तथा चारो तरफ विभिन्न तरह के ड्रॉइंग और हेंडीक्राफ्ट विद्यार्थियों द्वारा बनाया जा रहा है सुबह के समय में सारे विद्यार्थी विद्यालय में मौजूद है।